जो की मंदिर में ऐसा कोई है नहीं। इसी तरह बना के अ छोड़ा गया है जो की बहुत सुन्दर लग रहा है यहाँ का मंदिर और ये गणेश भगवान् हैं ऊपर की तरफ बहुत अच्छा --